मस्जिद में ऊपर गुंबद दिखाई दे रही है। सामने हमें सड़क दिखाई --

कथई कलर का है ऊपर बहुत सारी लाइट लगी --

ए-म् कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें बोहोत सारे खाने की फोटो लगे हुएं हैं और कुछ टॉम एंड जेरी और कुछ --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

अ-म एन चारों तरफ गुब्बारों से सजाया हुआ गेट बना है सामने एक व्यक्ति खड़े हुए हैं जिन्होंने ब्लू म-म येलो टी-शर्ट पहनी है।

सामने हमें एक लोहे से बना हुआ अ बॉक्स दिखाई दे रहा है जोकि पाइप से बना हुआ है पीछे हमें --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

एक सड़क दिखाई दे रही। सड़क पर एक साइकिल और कुछ ऑटो रिक् --

अम्म एक टी एक अअ पुलिस दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ब्लैक शर्ट --

और कुछ बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दीवार दिखाई दे रही है। सामने टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है। बीच में --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

सामने हमें एक जेंट्स बा टॉयलेट दिखाई दे रहा है। एक टेबल दिखाई दे रही है। नीचे फर्श दि --

हेयरकट कर रहा है। सामने एक लड़का बैठा हुआ है। अम्म नीचे मुंडी किये हुए मोबाइल देख रहा है। साइड में एक वाटर कूलर रखा है।

महिलाएं दिखाई दे रहे हैं। नीचे नदी दिखाई दे रही है। नदी में सभी महिलाएं खड़ी हुई हैं। महिलाओं ने घूंघट डाला हुआ है। पीछे हमें मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान में बहुत सारे --